इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है जिसमें की बेड लगे हुए हैं चारों तरफ--

लंबे लंबे पेड़ और बाउंड्री दिखाई दे रही है इसमें एक लोहे की बाउंड्री है और गार्डन का कलर --

और उसके सामने एक बैग रखा है और एक पर्दा लगा हुआ है जो की गुलाबी कलर का है।

इस तस्वीर में बहुत सारे टेंट हाउस बने हुए हैं जो की अलग अलग कलर के हैं।

और एक सफेद कलर का मकान बना हुआ है और इसके चारों तरफ गुलाबी कलर के--

इस तस्वीर में एक न्यू भाग्यश्री घी भंडार दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर एक सीढ़ी बनी हुई है जो की स्टील की रेलिंग दिखाई दे जिसमें स्टील की रेलिंग लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक पंचायत समिति दिखाई दे रही है जो की चंद्रपुर में स्थित है।

इस च इस समिति के बाहर एक काले कलर का गेट लगा हुआ है और इसके अंदर एक सफेद कलर की गाड़ी--

पे शेरो का कलर पीले कलर का है और शेर जो है सामने की तरफ मुँह करके --

खिड़कियां जो है सफेद कलर की बॉर्डर की बनी हुई है इसके बाहर एक साइकिल रखी हुई है।

और एक सफेद कलर की स्कूटी रखी हुई है और पीछे की तरफ कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो की हरे कलर के है और रोड के साम --

और उनके पीछे ते तीन महिलाए दिखाई दे रही है और उनके आसपास पेड़ दिखाई दे रहे है।

और रोड के किनारे छोटे छोटे से पौधे दिखाई दे रहे हैं और इस गार्डन में एक फसल पट --

इस तस्वीर में एक ताल एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बाहर कुछ महिलाए और कुछ पुरुष दिखाई दे रहे है और उनके साथ --